ये हिरण बेठे है कुछ इसमे से कुछ बेठे है कुछ खड़े है इसके बाउंड्रीस के लास्ट मे लास्ट साइड मे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए--

ये एक ऑफिस लगता है इनकम टैक्स ऑफिसर का कबीरधाम में है हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है इस--

और है ना मोबाइल नंबर भी लिखा है झंडे भी लगे है अलग-अलग कलर की उप्पर पिंक लगा है येलो हे वाइट हे ग्रीन हे।

और एक गाड़ी भी सही हो रही है गाडी क्या टैक्टर है दो लोग सही कर रहे है उसको और गेट दिख रहा है यह पर अभियन्त यानी मतलब कही पे कोई कार्यालय है कुछ काम चलता है यहाँ--

जेमे दो तोते है बहुत बड़े-बड़े है बहुत बड़े-बड़े है।

न चाय सेंटर है चाय यहाँ चाय भी मिलती है कॉफी भी मिलती है पास में एक शटर लगा हुआ है जो बंद है एक पटेल की दुकान है पास में --

रखा हुआ बहुत अच्छा उसपे रेड रेड दिल बने हुए हैं।

कॉर्नर ट्रैंगल शेप के आलू के पराठे रखे हुए एक प्लेटस में--

बीच में घर भी बना हुआ है बहुत बड़े-बड़े पेड-पौधे लगे है घास भी लगी है टाइल्स भी लगे है।